ऐना दिखाई दे रहा है। घड़ी लगी है। लाइट दिख रही है। चेयर रखी है। मशीनें रखी हैं।

जेंट्स एंड लेडीज दिखाई दे रहे हैं। फल फ्रूट की दूकान दिखाई दे रही है। सामने बेंच दिखाई दे रहा है। खम्बा दिखाई दे रहा है। पेड़ लगे हैं।

गाड़ी दिखाई दे रही है। नीली कलर की शटर दिखाई दे रही है। यहाँं रोड दिखाई दे रही सिड्डी दिखाई --

और एक बांध जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ब्रीज़ दिखाई दे रहा। पीछे पेड़ दिख दे रहेंगे।

ऊपर पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है | ब्लू कलर के और दुकान आदि बंद --

रेड कलर वाला दिखा रहे हैं। यहाँ पर चार नारियल के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दिन का नजारा है। सामने घांस लगी हुई दिखाई दे रही है। पीछे पेड़ दिखाई दे रही है। एक बाजु में घर दिखाई दे --